टी_ वी_ऐस का भी शोरूम है और बिल्कुल ऊपर देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक भी है।

रात का टाइम लग रहा है फिर क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरा है।

नीचे अगर देखा जाए तो एक बहोत प्यारा सा लेक भी है जिसमें पानी है काफी सारा थोड़ा सा दूर होकर भी देखा जाए--

और लग रहा है कि वो सब्जियों के बारे में ही बात कर रहे हैं ऊपर एक टेंट भी लगा रखा है लकड़ी के सब उस पे।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक नाई की दुकान है जिसमें एक नाई एक आदमी के दाढ़ी काट रहा है।

उस आदमी वह आदमी एक लाल चेयर पे बैठा है और उसने नीले रंग का वस्त्र भी पहना हुआ है आसपास अगर देखा जाए तो एक टी_वी --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे काफी सारे टाइल्‍स पड़े हुई हैं और देखने में यह लग रहा है कि यहां पे टाइल्‍स बनाई जाती है ।

और हल्का सा हम आगे जाकर देखे तो यह राजस्थान मार्बल्‍स का बोर्ड भी लगा हुआ है एक गाड़ी भी खड़ी हुई है सफ़ेद कलर की और--

पा रहे है थोड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं जिस पे काफी पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं एक पोल भी खड़ा हुआ है बिजली का पोल और थोड़ा सा--

और थोड़ा-सा आगे देखा जाये तो एक टनल भी बनी हुई है जिसके अंदर से गाडि़यां आती-जाती रहती है रोड बहुत प्‍यारी लग रही है और साफ है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक शाम का समय हैं और काफी लोग एकट्ठा हो रखे है शायद कुछ ख़रीदा जा रहा है और यह मार्केट हो सकती हैं।

और पोल भी है बिजली का पोल भी है और एक बैनर भी लगा हुआ है।

और लोग कुछ न कुछ खरीद रहे है क्योंकि यहां पे दुकानें भी दिखाई दे रही हैं और बैनर्स भी लगे है इ_एम_आई बैनर ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक सुबह का दृश्य है और दृश्य में दो बोट्स दिखाई दे रहे हैं एक बोट लाल रंग की है और एक नीले रंग की है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह सुबह का समय है और देखने में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और आस पास कुछ बच्चे भी है।

क्योंकि यह बहुत ही चमचमा रहा है लाइटों से पूरा भरा हुआ है और नीचे फूलों से भी बहुत प्यारा सा डेकोरेट हो रखा है ये बिल्डिंग --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक दिन का समय है और शायद ठंड काफ़ी ज्यादा हो रहीं है क्योंकि यहाँ पे कोहरा भी छाया हुआ है और लोगों ने--

जैक्टिस भी पहन रखी है और इस कंस्ट्रक्शन साइट पे शायद एक बिल्डिंग बनाई जा रही है क्यों काफ़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं और--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह सुबह का समय है और काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है पहाड़ ही पहाड़ है दूर दूर तक जितना भी आप दूर देखोगे और --

पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर से लोग भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूर में एक टेंट भी लगा है दिखाई दे रहे हैं।

थोड़ा सा नीचे आके देखें तो पेड़ भी लगा हुआ है और झूले भी दिखाई दे रहे हैं --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस पिक्चर में यह एक शोरूम है और देखने में कपड़ों का शोरूम लग आ रहा है क्योंकि आस-पास--

और अंदर येल्लो कलर की एक बिल्डिंग भी है जिसकी छत पे एक टैंकी भी रखी हुई है जो कि काले रंग की है।

बहोत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं एक ही जगह पे और सूर्य देव को देख के प्रणाम किया जा रहा है शायद कोई त्यौहार है का--

जो चौहान गन्ना जूस भंडार की एक शॉप भी है जिसमें गन्ने का जूस मिलता है और पीछे लाल रंग का एक मंदिर भी है जिसकी दिवारें लाल रंग की है --

और एक व्हाइट कलर की कार भी खड़ी है और दो बाइक्स भी खड़ी हुई है।